यह एक क्लास रूम का चित्र है यहां पर बहुत सारी लड़कियां बैठी हुई है।

बाहर में कुछ कुरकुरे भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक होटल का चित्र है जिसका नाम न्यू जय मां तारा लिखा हुआ है।

सामने में एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसने सफेद कलर का कपड़ा पहना हुआ है।

ऊपर में कुछ लाइट भी लगी हुई है सामने में एक पानी का बॉटल भी रखा हुआ है।

पीछे एक खजूर का पेड़ दिखाई दे रहा है।

सभी बाइक बैटरी से चलता है।

सामने में एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसकी हाथ में एक झंडा दिखाई दे रहा है इसमें ओला लिखा हुआ है।

सामने में कुछ तार पार किए गए हैं।

साइड में एक जनरेटर भी दिखाई दे रहा है।

पतंजलि का कॉलगेट भी रखा हुआ हैं।

मंदिर का दरवाजा लॉक है।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

यहां पर बहुत सारी साड़ियां दिखाई दे रही हैं जो अलग अलग कलर के हैं।

बिल्डिंग के सामने बहुत सारे खंबे लगे हुए हैं जिस पर लाइट लगे हुए हैं।

यह एक सुनसान रोड दिखाई दे रहा है।

यह एक गैरेज का चित्र है।

पेट्रोल पंप के पीछे एक घर दिखाई दे रहा है जो सफेद कलर का है।

ऊपर में बहुत सारे तार पार किए गए हैं।

यहां सामने में बहुत सारे आदमी आ जा रहे हैं।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

नीचे में बहुत सारे आदमी और बहुत सारी लड़कियां भी दिखाई दे रही है।

यहां पर बहुत से बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यह एक मोबाइल का दुकान है।

नीचे में डिजाइन वाले ईट बिछाए गए हैं जो रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं।